उस व्यक्ति के पास भिन्न प्रकार के की सब्जियाँ हैं वो सड़क पे बैठ के ये सब्जी बेच रहा है।